बड़ी-सी स्टेशनरी की दुकान है जिस स्टेशनरी के काउंटर में दो लडकियां ऐ बैठी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है सा--

एक लड़का हाथ में कॉफी रखा हुआ है जो एक लड़का एक सफेद कपड़ा पहने एक कॉफी पी रहा है और नीचे पिज़्ज़ा रखा हुआ है। उसके पीछे शायद काउंटर काउंटर लगी हुई है।

छोटा-सा एक अ ओवरब्रिज है ओवरब्रिज के नीचे एक आदमी जो सैलून छोटा-सा खोला हुआ है।

बड़ा-सा ए एक रोड है जो आने-जाने का रास्ता बना हुआ है। कुछ मैजिके ट्रकें स्कूटी गाड़ियाँ चल रही है कुछ लोग पैदल चल रहे हैं कोई ए स साइकिल चला रहा है।

और अगल-बगल मकानें बनी हुई है। एक एक दुर्गा देवी की मंदिर भी है।

और एक सोफा रखा हुआ है। स्टेज पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और नीचे कुर्सियाँ रखी हैं जिसमें सभी लोग बैठे हुए हैं।